बिल्डिंग के बाहर एक बाइक रखी हुई और रोड पे बड़ी-बड़ी लाइटे लगी हुई है।

उम्म लड़के के पीछे एक सैलून है।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

बीच में एक वाइट कलर का हॉल दिखाई दे रहा है वाइट कलर के हाल की बाहरी दीवाल पर एक क्रॉस का निशान है।

इमेज में एक बिल्डिंग शो हो रही है मार्केट मे ये बिल्डिंग बनी हुई है।